वही दीवाल पर स्वर्ण रंगों से वेलकम लिखा हुआ है यहां पर एक ए_सी और बहोत से पंखे लगे हुए है।

इस तस्वीर में हमें हरे व सफेद रंग के एक उची इमारत को दिखाया गया हे जिसके ऊपर से--